डा डेकोरेट हुआ है सी_सी_टी_वी कैमरेज लाइटिंग सीढ़ी--

यहां एक गार्डन है जिसमें व्हाइट कलर की बिल्डिंग भी दिखाई दिया जा रहा है और पेड़ पौधे और लोहे के दरवाजे--

साथ में तिलक चंदन लिए बैठी है।

यहां एक शोरूम है जहां पर एक--

ई रिक्शा न्यू वाला दिखाई दिया जा रहा है दो रिक्शा दिखाई दिया जा रहा है जिस पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यहाँ एक गार्डन हैं जहाँ पर किसकी किसकी प्रतिमा बनी नजर आ रहीं हैं।

यह एक कपड़े का शोरूम है जहां पर--

मेस्ट्रो वगर खड़ी है यहाँ से एक लेडिस गुजरती हुई नजर आ रही हैं।

चटनी है ग्रीन चटनी रेड चटनी और खाने की चीज के ऊपर दही डला हुआ है और धनिया पत्ती भी डला हुआ है।

दो जेंट्स एक बच्ची एक लेडिस नजर आ रही है जहां पर लोहे की दरवाजा लोहे की खिड़की भी है।

यहां एक डेयरी है जहां पे एक जेंट्स जा रहा है एक लड़की--

नारियल बंधा हुआ लाल कपड़ा है टाट पट्टी की है यहा पर सिलेंडर और गन --

यहां पर जग है।

कैफे हैं जहां पे हैप्पी बर्थडे का--

पंडित जवाहर लाल नेहरू गौतम बुद्ध बुद्ध--

गमले साइड रखाया है सोफे भी है यहां पे--

यहां पर एक नहर झील बना हुआ हैं जहां आस पास पेड़ पौधे हैं।

यहां पर एक लड़की गुपचुप खाते हुए नजर आ रही है और तीन जेंट्स है यहां पर एक एक्स_एल भी खड़ा है बाहर पे।

जहां पर डिस्को लाइट का शो हुआ है।

यहां एक कार शोरूम हैं।

सोफा बना हुआ है बैठने के लिए आस पास पेड़ पौधे है लोहे के राड डले हुए है।